यह एक रेलवे फाटक है। यहां से गाड़ी गुजरती रहती है और आस-पास गाछ वृक्ष दिखाई देती और यहाँ --

यह एक ब्यूटी पार्लर है जिसमें --

संरक्षण विभाग है और यहाँ के आस-पास के लोग यहाँ पे आते रहते हैं।

यह एक गार्डन है और गार्डन में हरा-भरा वृक्ष भी दिखाई देता है और यहां पे --

यह एक गोलम्बर है और यहाँ पे सिटी गेट बैंक दिखाई देता है।

सुविधा है और यहाँ पे जनरेटर भी है और यहां पर पे हरा-भरा वृक्ष --

के लोग यहां पे भीड़ लगाए हुए हैं और बगल में गेट ग्रिल भी लगा हुआ है और --

यह एक सैलून है इसमें एक व्यक्ति सेल्फी ले रहे हैं और यहां पे एक चश्मा भी है और यहां पे लोग बाल कटवाने के लिए |